एक हॉल है। हॉल में बहुत सारी दरी बिछी हुई हैं।

पीछे एक मकान है। मकान में खिड़की दरवाजे लगे हुए --

कान के पास बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं एक खंभा है।

बहुत सारे स्टूल रखे हुए हैं स्टूल पे किताब रखी हुई है।

कुर्सियों के पास में डिब्बा है डिब्बे पे एक पानी की बोतल रखी हुई है।

खम्भे पे एक पोस्टर लगा हुआ है इसपे एक आदमी बना हुआ है।

ऊपर छोटी छोटी गो लाइटें लगी हुई हैं मकान का दरवाजा लकड़ी का बना हुआ हैं।

सिंह जी डिजिटल फोटो स्टूडियो अवर सर्विसेज लिखा हुआ है।

मकान के ऊपर गमला रखा हुआ है एक तार निकली हुई है।